तो दूसरे सज्जन मोबाइल फोन पर किसी से करते हुए नजर आ रहे हैं पीछे नीले रंग का दरवाजा है जो की बहुत ही बड़ा और सुंदर है।

जिनके समक्ष बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं। दर्शन के लिए डिस्प्ले में--

यहाँ एक शांति सभा का आयोजन किया हुआ प्रतीत हो रहा है दो बच्चियां हाथ मे जलती हुई मोमबत्ती के साथ खड़ी है।

कुछ मोटरसाइकिल तो कुछ एक्टिवा तो कुछ साइकिल गाड़ी और कुछ फोर व्हीलर्स भी नजर आ रही हैं।

दोनो ने ही जींस पहना हुआ है उनके सामने सफेद रंग की ऊंची सी इमारत खड़ी है जिसमे अनेक खिड़किया है।

दो व्यक्ति किताब की दुकान में विराजमान है एक व्यक्ति की आँखों पर चस्मा है तो दूसरी की आँखों पर चस्मा नहीं है।

नीले रंग की टी-शर्ट में बैठे हुए हैं भाईसाहब फोन चला रहे हैं।

पीले रंग की शर्ट एवं जींस पहने हुए सज्जन पुरुष बिस्किट का वितरण करते हुए नजर आ रहे है।

यह सड़क का एक दृश्य है जहाँ पे स्वच्छता सर्वेक्षण दो हजार बाइस का चित्र बना है।

यहाँ सफ़ेद रंग के पोस्टर पर यू.पी.एस.सी. नोट आई.जी.एन.औ.यू. बुक यह लिखा हुआ है।